एक सफेद रंग के पत्थर भी नजर आ रहा है बड़ा से पत्थर को पूरा रंग दिया है।

इस बल्ब में दो रंग के डब्बे हैं सफेद और काले।

पीछे में काले रंग के चेयर है।

तस्वीर में एक बाइक गेराज दिखाया जा रहा है।

यह तस्वीर में एक आदमी दिखाया जा रहा है जिसने सफेद रंग की शर्ट पहने हैं नीले रंग के पैंट पहने हैं।

बाल काटने वाला ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं।

यह तस्वीर में एक एस_बी_आई बैंक दिखाया जा रहा है।

लोहे मशीन सब पर बहुत सारे जंग लगा है।

इस कमरे में बहोत सारे बच्चे भी है।

इस रूम में तीन दरवाजे नजर आ रहा है और दो खिड़की नजर आ रहा है।

इसमें कोने में एक आदमी नजर आ रहा है सफेद रंग के कपड़े में।

इस पानी में किसी ने बंबू के लाठी जमीन में घुसा के रख दिया है।

मैदान के कोने में बहुत सारे घास नजर आ रहा है पेड़ नजर आ रहा है।

ये तस्वीर ऊपर से लिया गया है सब छतर छीतर नजर आ रहा है।

एक घर के दीवार पर बंबू बांधा गया है घर की मरम्मत करने के लिए या कलर करने के लिए लगाया--

दरवाजें कांच के हैं।

ये तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है जिसका नाम सितारा फैमिली रेस्टोरेंट है।

नीचे में बहुत सारे मिट्टी और पत्थर नजर आ रहा है।

कोने में लाल रंग के कपड़े नजर आ रहा हैं।

प्रे के नीचे ही दो आदमी नजर आ रहा है।

बच्चे बूढ़े जवान सब इस पर नहाने के आते हैं।

इस तस्वीर में बहोत सारे बच्चे दिखाया जा रहा है।

इसमें ये सारे बच्चे नित्र सीखता है।